मेज है और कुर्सियाँ भी हैं कुर्सी के ऊपर एक बैग है।

जहां पे दो लोग मछलियां काट रहे हैं।

और दो-तीन मकान छपड़े के भी दिखाई दे रहे है।

और बगल में बोहोत ढेर सारे --

यहाँ पे सजावटें की गयी हैं।